यहां नीचे में भी एक व्यक्ति खड़ा है। जिसने हरा कलर का टी शर्ट पहना हुआ है। उसके आगे भी एक व्यक्ति है।

इस पिक्चर में एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जो पीला कलर और हल्का रेड कलर का है।

यहां सामने में घर है जो पीला कलर का है और वो पूरा झालर से सजाया हुआ है यहां पर बहुत सारे टेबल और चेयर रखें जो सारे एक ही कलर के--

नीचे रेड कलर का कारपेट जिताया हुआ है यहां पर बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं।

रखा हुआ है जो हरा कलर का है ब्लू कलर का है ब्राउन कलर का है और पीछे में भी ब्लैक करके मार्बल में बहुत सारे बासिंग रखे हुए हैं।

यह तस्वीर एक क्लीनिक की है और यहां सामने में एक डॉक्टर बैठे हुए हैं और यहां पर इनके बगल में एक और व्यक्ति खड़ा है जो टी_वी की ओर देख रहा है।

इस तस्वीर में सामने वाले दीवार में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है।

दृश्य में एक दुकान दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें शर्मा--

और यहा पर बंधन बैंक का ए_टी_एम भी है और इसके बगल मे बैंक है और यहा ऊपर मे कुछ लाइट्स लगे हुए है।

इस पिक्चर में बहुत सारे अलग अलग तरह के बेड दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर का दृश्य है यहां सामने में एक बड़ा से खिड़की है और यहां पर एक पिलर है।

इस तस्वीर में बहुत सारे टेबल और चेयर दिखाई दे रहे हैं जो कि कुछ कपड़े से ढके हुवे है और ये एक किनारे में एक लाइन से पुल पर लगे हुवे वाइट कलर के बल्ब दिखाई दे रहे हैं।

इसमें हरी कलर के साड़ी पहना हुआ है यहां पे बहुत सारे औरत लोग दिखाई दे रहें हैं।

और इस दुकान एक पंखा है और पंखा के बगल में तीन तकिया है।

यहां पर एक कार है जिसका गेट खुला है और इस कार पर सर्फ लगा हुआ है।